एक रेलवे लाइन मुझे दिख रही है एक ट्रेन जा रही हैं।

कुछ बिल्डिंग का काम चल रहा हैं बहोत सारे लोग यहां पे काम कर रहे हैं एक भाई साहब खड़े हुएं हैं।

एक अ डी_टी_डी_सी की दुकान है और दो लोग अंदर बैठे हुए हैं।

और जिस चेयर बैठे हुए है वो रेड कलर की है और आगे कुछ स्टेज जैसा कुछ सजा हुआ हैं कुछ ध्यान से नही--

यह एक पेट्रोल पंप है और यहां पे एक गाड़ी खड़ी हुई है।

वहां पे कुछ एक अ बैठने वाला अ बना हुआ है।

मुझे एक रेस्टोरेंट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और यहां पर एक टेबल है।

क्या एक कॉलेज दिख रहा है जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय कटनी मध्य प्रदेश में है।

और कुछ बच्चा एक बच्चे की फोटो बनी हुई है उस होटल पे--

यहां एक स्कूल मुझे दिख रहा है जो मॉर्निंग स्टार का है पब्लिक स्कूल ।

और यहां पे बहोत भीड़ है लाइन लगी हुई है।

जो दिखाई दे रहे हैं मुझे और क्या कहते हैं छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

यहां एक झरना गिर रहा है और जो पहाड़ से होके आ रहा है।